इस फोटो में मुझे मकान दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे एक पोस्टर दिखाई दे र--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

इस फोटो में मुझे चारों तरफ बाउंडी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बड़ी सी खिड़की दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है।